फूल दिखाई दे रहा है लाल हरा पीला येलो कलर का फूल दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर का पर्दा दिखाई दे रहा --

यहां पे एक रोड का लोकेशन दिखाई दे रहा है जो बहुत बड़ा रोड दिखाई दे रहा है रोड में बहुत सारे जाम लगे हुए हैं सामने में एक ऑटो दिखाई दे रहा है जिसमें एक आदमी बाहर में खड़ा है।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

यहां पे एक मेला दिखाई दे रहा मेला बहुत सुंदर दिखाई दे रहा बहुत सारे मेला में भीड़ दिखाई दे रहा बहुत सारे झूले दिखाई दे रहे फिसलन दिखाई दे रहा।

बहुत सारे रंगीन पर्दे दिखाई दे रहे हैं जो रेड ग्रीन कलर का है।

यहां एक रूम दिखाई दे रहा है जो बहुत बड़ा है रूम का कलर येलो और रेड कलर का है रूम में बहुत सारे सामानें रखी हुई है सामने में टेबल दिखाई दे रहा है जिसमें कंप्यूटर रखा हुआ है।

एक आदमी दिखाई दे रहा है जो मोबाइल चला रहा है एक और आदमी दिखाई दे रहा है जो लैपटॉप चला रहा है भगवान जी के फोटो दिखाई दे रहा है बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही है गेट दिखाई दे रहा है पर्दा दिखाई दे रहा है टॉपी दिखाई दे रहा है मेटल दिखाई दे रहा --

लाइट दिखाइ दे रहा है पंखा दिखाइ दे रहा है कैमरा दिखाइ दे रहा है ए_सी दिखाइ दे रहा है सीढी दिखाइ दे रहा--

यहां पे एक बड़ा सा रूम दिखाई दे रहा है रूम बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है रूम में बहुत सारे सामान दिखाई दे रहे हैं सामने में एक ब्लैक कलर का सोफा दिखाई दे रहा है।

फोटो पेपर रखा हुआ है सामने में कैंडल रखा हुआ है ब्लैक कलर का चेयर दिखाई दे रहा है खिड़की दिखाई दे रहा है।

यहाँ पे एक बहुत बड़ा ग्राउंड दिखाई दे रहा है। ग्राउंड बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है। ग्राउंड में बहुत सारी घासे दिखाई दे रही है छोटे-छोटे पौधे दिखाई दे रहे हैं झाड़ियां दिखाई दे रही है।

बहुत सारे बिल्डिंग दिखाई दे रहे हैं खिड़की दिखाई दे रही है घर के कलर रेड दिखाई दे रहा है जिसमें ऐ-सी-सी सीमेंट लिखा हुआ है एक सीडी दिखाई दे रहा है बहुत सारे लोग दिखाई दे रहा है।

एक एल्वेस्टर दिखाई दे रहा सामने में एक लड़की दिखाई दे रही है जो रेड कलर कुर्ता और जींस पहनी हुई है सामने में रेड कलर का कारपेट दिखाई दे रहा टिशू पेपर दिखाई दे रहा।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

स्टेज पर चेयर दिखाई दे रहा है वाइट कलर का सामने में बहुत सारे गुलदस्ते दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे टेबल दिखाई दे रहा है।

मेन्यू कार्ड दिखाई दे रहा है एक नमक का टब्बा दिखाई दे रहा है एक झूला दिखाई दे रहा है।

सी दिखाई दे रहा गमला दिखाई दे रहा पत्थर दिखाई दे रहा है घर दिखाई दे रहा है खिरकी दिखाई दे रहा है।

फूल के गमले दिखाई दे रहा है गुलदस्ते दिखाई दे रहा है जिसमें वाइट कलर का फूल है वाइट कलर का चेयर दिखाई दे रहा है।